दो चश्मा लगाये हुए हैं लाल रंग के --

आगे में पेड़-पौधा बहुत सारा --

ई लेटर बॉक्स पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स इसमें लोग --

चिट्ठी पत्र भी रहते हैं ये लाल रंग का है।

एक आदमी हाथ में झोला लिए हुए है।

चबूतरा पे दो मोटरसाइकिल लगा है। निचा में देख आसमानी रंग के --

बोर्ड टँगा हुआ है। बौल जल रही है।